बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत झाकस है।

यहाँ कोई नेता आ रहा है कितना अच्छा लग रहा है यहां पे जैसे वे लगा हुआ हैं उधर भी बाइक लगा हुआ इधर भी बाइक लगा हुआ इधर साइकल लगा--

क्या बताये बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा लग रहा है।

इतना सुन्दर-सुन्दर रिक्शा है बताओ यार कितना अच्छा बहार है नई रिक्क्षा है कितना अच्छा-अच्छा रिक्शा है मत पूछो।

ये दिखाई भगवान यहाँ कितना अच्छा चीज़ यहाँ पर बना है कितना सुन्दर लग रहा है बत मत पूछिए बोहोत सुन्दर लग रहा है बोहोत बढ़िया लग रहा क्या बात है बोहोत अच्छा है।

क्या बताये इतना अच्छा है मत पूछिए।